एक लाइट लगी हुई है और दूर कुछ पेड़ दिख रहे हैं मैदान में बच्चे खेल रहे --

पीछे की तरफ आ दरवा अ अ बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

चित्र में मंदिर दिखाई दे रही है और इसके सामने बहुत सारी लाइट्स लगी हैं हम्म मंदिर के सामने सीढ़ियां दिख रही हैं कुछ लोग सीढ़ियों पर बैठे हैं।